यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा एक नहर है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता। काफी सुंदर है और यहाँ पे ढ़ेर सारे बोल्डर रखे हुए हैं पत्थर जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। काफी सुंदर है।

ये में दो बोल लगे होते हैं और यहाँ पे दो ऐने भी लगे हुए हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है। काफी सुंदर है और यहाँ पेर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि पूरा हरा भरा दिखाई देते हैं। बहुत --

यहाँ पे आप देख सकते है ये कपड़ा का दुकान है ओर इस कपड़ा की दुकान मे ढेर सारे यहा पे चादर रखे हुए है जो की देखने मे बहुत ही अच्छा लगता है।

और यहाँ पे पहाड़ भी है जोकी बहोत ही अच्छे दिखने में लगते हैं| और यहाँ पे बहोत ही ऊँचे ये पहाड़ है और ईसपे ढेर सारे यहाँ पे छोटे-छोटे हरे-हरे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

यहा पे आप देख सकते है ये माला का दुकान है यहाँ पे सभी फूलों का माला मिलते है फूल मिलते है।

यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे मसाला मिलाने वाला ये मशीन है जो की देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और यहां पे एक लोग खड़े हुए है जो की टोपी पहने हुए है बहुत ही अच्छा देखने मे लगता है काफी सुंदर है।